डस्टबिन रखा गया है टेबिल के ऊपर।

एक बेड पर लेटे हुए हैं दो साइड बेड --

रोड के किनारे कचड़े का ढ़ेर लगा हुआ है गाँव की कच्ची --

मंदिर में एक नंन्दी जी की मूर्ति दिखाई दे रही।

पेड़ पौधे और कुछ फूल लगाए गए हैं विद्यालय में एक साफ-सुथरा मैदान है |

इस शॉप को बहोत बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित किया गया है।

इस तस्वीर में एक बिल्डिंग दिखाई गयी है बिल्डिंग किसी शासकीय दफ्तर की है।

यह तस्वीर किसी रिसेप्शन पार्टी की दिखाई दे रही है।

साइड में कार के कुछ पार्ट्स रखे दिखाई दे रहें हैं।

कई आइटम दिखाए गए हैं जो की स्क्वायर --

कई तरीके की देवी-देवता बिठाए गए हैं जिस में भगवान शिव --

इस तस्वीर मे एक अ लकड़ी के ऊपर आर्ट की गयी है। लकड़ी को काट कर--